काफी ज्यादा बड़ी दुकान है क्या बताऊं इस दुकान के बारे में --

सर पर उनके बट्ठल है और आधों ने बनियान पहन रखी है बिना कुर्ते के और क्या और यहां पर एक मकान बन रहा है।

ऊपर बादल की घटाएं छाई हुई हैं बारिश होने वाली है और काफी अच्छा व्यू है।

इसमें काफी हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान काला दिखाई दे रहा है दुकान बहुत अच्छी ब्यूटीफुल है।

और यह धूप में रखे हुए हैं जो एक बेहतरीन गार्डन है।

इसके आस पास काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर कुछ गुड्डी फोटोज और भी कुछ बच्चों के खेलने की चीजें आदि इसके अंदर रखी गई है।

जो काम मे ली जायेंगी बहोत अच्छी शॉप नज़र आ रही है ये बहोत अच्छी शॉप है।

और वस्तुऐ रखी हुई हैं जिनकी संख्या काफी ज्यादा है यह नीचे कच्ची जमीन पर रखी हुई हैं।

ऐ_सी भी लगी हुई है एक व्यक्ति खड़ा है।

और आ काफी ज्यादा छोटे बड़े पौधे लगे हुए हैं बाहर एक नीचे ए_सी भी लगा हुआ है कुछ सामान भी पार्क में रखा हुआ है।

जिसके अंदर काफी माला टंगी हुई दिखाई दे रही है और भी कुछ समान दिखाई दे रहा--

जहां क्यारी में गेंदे लगे हुए हैं और गेंदों का रंग ऑरेंज है और यह एक बड़ी है।

एक बड़ा पौधा दिखाई दे रहा है एक पेड़ लगा हुआ है जिसके नीचे गाय बांधते है गौशाला जैसा दिखाई पड़ रहा है यह अच्छी स्कूल है।

बिल्डिंग में कुछ कांच की खिड़कियां हैं छ खिड़कियां कांच की दिखाई दे रही है बाहर एक रस --

टेबल पे रखा हुआ कुछ सामान दिखाई दिया प्लेटस दिखाई दे रही है टेबल के दोनों तरफ लंबी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक दरगाह है इसके बाहर कुछ लगे हुए हैं।

यह एक शॉप है इसके अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और आइसक्रीम के डीप फ्रिज भी रखे हुए हैं और आसपास में पेड़ भी हैं।

आज पास पौधे दिखाई दे रहे है इसमें लोहे के बाद ट्रायंगल बने हुए है लाइटें जची हुई है इसमें संसाईट ब बढ़िया आ रहा है।

जिसके ऊपर एक शटर लगा हुआ है जिसपे नीला पेंट किया हुआ है और एक --

यह एक कार पार्किंग पार्किंग है या कर सर्विस सेंटर कार है जिसके अंदर काफी कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं।